मुझे बडी मंदिर की मूर्ति लेके जाते हुए नजर आ रहे हैं और वो उपर में हमें पालकी दिखाई दे रही है जोकी सब लोग पकड़ के दिखाई दे रहे हैं और हमें यहां पर पालकि के उपर बहुत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं।

और हमे यहा पर दुकान बहुत सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोग खडे दिखाई दे रहे।

बहुत हि खूप सूरत मेला दिखाई दे रहा है जोकि एक उसके नीचे से हमे बहोत बड़ी सड़क जाती हुई दिखाई दे रही जिसमेसे बहोत सारी गाड़ी आती जाती नज़र आ रही है।

और हमे यहा पर दो लोहे की गेट दिखाई दे रहे है जोक काले कलर के नज़र आ रहे है और यहा पर हमे कंपाउंड व्हाल दिखाई दे रहा है जो इट का बना हुआ नज़र आ रहा है और यहा पर हमे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जोकि बहोत बड़ी नज़र आ रही है सफेद कलर की दिखाई दे रही है और हमे यहा पे खिडकी--